और उसका आगा में बहुत सारा बांस है।

और बाइक के सामने में एक हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।

और एक टीना घर है।

और घर जो टीना से बनाया हुआ है।

दुकान का अंदर में एक बड़ा सा टेबल है।

और ये दुकान में बहुत सारा डब्बा है।

बड़ा सा एक गेट है।

और रूम का अंदर में बहोत सारा इंसान है।